एक साइड में भी खड़ा हुआ है कुछ कपड़े भी बांस पे डाल के सुखाया जा रहा है।

इस तस्वीर में अंधकार में प्रकाश की एक बिखरती हुई छटा का प्रयोग किया गया है।

ये तस्वीर दूर से ली गयी एक बस्ती की है जहां पे आस-पास में छोटे-छोटे मकान दिख रहे है कुछ प्लास्टर के है कुछ बगैर प्लास्टर के है कुछ पुताई के है कुछ नहीं पुताई के है।

इस तस्वीर में एक पेट्रोल पम्प को दिखाया गया है जिस के पास काफी बड़ा एरिया है और इंटर लॉकिंग की फर्श है पड़ोस में है हरियाली वाली झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों में लाइटींग का इस तरीके से प्रयोग किया गया है की जो फूल के म समान लगतीं हैं।